ब्लैक टी सुपर चाय हेल्थ टी --

असम शाम चाय ये चाय के बॉक्स रखे हुए है चार स्टील के चेयर रखा हुआ पंखा नजर आ रहा है।

झाँसी की रानी जैसे तलवार लिए हुए घोड़े पर कुछ कोई बैठा हुआ है।

पाइप फैला हुआ है पानी का सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ब्लू कलर का बिल्डिंग शो कर रहा है शोरूम का।

लाइट्स दिख रहा है जिसमें बाज़ार सेल्फ सर्विस काउंटर लिखा हुआ है जिसमें खाने के पोस्टर्स लगे हुए हैं।

सी.ओ. डबल बी इटली फ्लाइंग कलर्स ऑफ़ फैशन शोरूम है कपड़ो का जिसमें कपड़े रखे हुए है काफी सारे।

दो व्यक्ति शो कर रहा है बाई वन गेट वन फ्री ऑफर चल रहा हुआ है ब्लैक कलर का शोरूम --

साड़ी का शोरूम शो कर रहे हैं जिसमें जो माला पीला लगी हुई हैं वो डिज़ाइनिंग है।

माता रानी की मूर्ति रखी हुई है जिसमें स्वास्तिक बना हुआ है नारियल रखा हुआ है सामने पीछे बिल्डिंग शो कर रहा है।

टाटा मोटर्स शंकर लिखा हुआ है शोरूम के सामने शटर खोलते हुए दो लड़के दिखाई दे रहें हैं।

झूला झुलने के लिए नजर आ रहा है जिसमें ऊपर चढ़ के घूमकर गिसरनपट्टी शो कर रही है एक बिल्डिंग शो कर रहा है।

पीछे ब्लू कलर का आसमान शो कर रहा है कुछ घर नजर आ रहे है ऐन्टेना की परछाई तलाब पर नजर आ रही है।

पंडाल शो कर रहा है जहाँ पर बहोत प्यारा रेड एंड येलो कलर का पंडाल लगा हुआ है।